ये एक केक दिखाई दे रहा है पिंक कलर का गुलाबी कलर का।

कुर्सियां भी दिख रही हैं।

और गार्डन है और --